पीछे टैंक दिखाई दे रहा है बहोत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री दिखाई दे रही है जिसके बाहर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रही है।

गमले दिखाई दे रहे हैं बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे एक बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। दीवालों पर कुछ कलर की डोंट छपी हुई दिखाई दे रही है। पीछे खरगोश दिखाई दे रहा है।

एक शटर दिखाई दे रहा है कैमरा लगा हुआ दिख रहा है।